एवं स्टेशनरी क्या आइटम मिल जाएगा।

श्री वस्त्र लोक कोमलचंद राजेंद्र कुमार का है।

जैसे गेट एस_एस_सी कैट नीट जे_ई --

यह तस्वीर अजंता डेरी की है अजंता डेरी में सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं।

अजंता डेयरी के बाहर बहोत भीड़ भी जमा है।

ये तस्वीर कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की है।

के_जी_एन सहज जन सेवा केन्द्र है।

यहां पर बाहर पार्किंग है टू व्हीलर और फोर व्हीलर जैसी गाड़ियों की --

चर्च गुलाबी रंग और सफेद रंग का है।

यह तस्वीर नेवार रेलवे स्टेशन की है।

नेवार रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन निकल रही है।

रेलवे स्टेशन का बोर्ड पीले रंग का है।

यह तस्वीर एक छोटे से गार्डन की है।

यह शादी किसी एक धर्मशाला से हो रही है।

यह तस्वीर ब्लू सिंह मेकअप एंड ब्यूटी सलोन की है।

यह तस्वीर अमरावती रेफ्रिजरेशन की है।

यह पेट्रोल पंप एच_पी कंपनी का है।

यह तस्वीर छतैनी रेलवे स्टेशन की है छतैनी रेलवे स्टेशन पर एक पसेंजर ट्रेन आकर खड़ी हुई है।

साथ ही दूसरे प्लेटफार्म से एक मालगाड़ी भी गुजर रही है।

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है बस स्टैंड में काफी सारी बस लगी हुई हैं।

काफी सारी यात्री बस स्टैंड के आसपास भीड़ जमाए अपनी बस का इंतजार--

दो शुगर के पैकेटस भी रखे हुए हैं।

कॉफीयों के साथ दो चम्मचें भी मिली हुई है।

काफियों को ट्रे में सर्व किया गया है।

यहां पर लिपिक कार्यालय भी बना हुआ है।